फोटो मे सामने एक बड़ा सा मकान दिखाया गया है जिसके पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर की तरफ एक छत दिखाई गई है जिस पर बीम पड़े हुए हैं और साइड में बिना लिसी हुई एक दीवार दिखाई गई है।

सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने एक टोपा ओढ़ा हुआ है।

कुर्सी के ऊपर कुछ आदमी बैठे हुए हैं और कुछ औरतें बैठी हुई हैं साइड में एक लड़की बैठी हुई है जोकि कुछ किताब ली है वो बैठी हुई है।

इस फोटो में सामने बहोत सारी सेफ रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में सामने एक बड़ी सी लैब दिखाई गई है जोकि एक पैथोलॉजी लैब लग रही है।

सामने फेडरल बैंक का एक बहोत बड़ा बोर्ड दिख रहा है जिसके नीचे एक बैंक दिख रहा है।

इस फोटो में एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा दाल और चावलो का शोरूम दिख रहा है।

पीछे की तरफ कुछ घी के डिब्बे रखे हुए दिख रहे हैं जो की बहोत सारी अलमारियों में रखे हुए है और नीचे की तरफ बड़े बड़े कट्टे दिखाई दे रहे हैं जो की एक के ऊपर एक रखा हुआ है।

सामने कुछ बाइके खड़ी हुई है कुछ औरतें टहल रही है जिनके हाथ में पन्नी दिखाई दे रही है।

पास में ही कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

सामने कुछ छोटी छोटी घास भी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में सामने बड़ी बड़ी मूर्तियाँ दिखाई गई है जिनके गले में कुछ मालाएं पड़ी हुई हैं।

इस फोटो में सामने कुछ मेज पड़ी हुई दिखाई दे रही है जिन पर कुछ प्लेटे रखी हुई दिखाई दे रही है सामने कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जिन पर झालरे लगी हुई है जोकि जल रही है।

और एक आदमी चौकी के ऊपर खड़ा हुआ है जो की योगा सीखा रहा है।

निचे की तरफ कुछ बच्चे और महिलाएं और आदमी योगा कर रहे हैं।

इस फोटो में सामने की तरफ एक गुफा दिखाई दे रही है जिसके आगे एक लड़का खड़ा हुआ है।

चेहरों का रंग कुछ कॉफी कलर का दिखाई दे रहा है।

ऊपर की तरफ कुछ शैंपू टंगे हुई भी दिख रहे हैं।

जिसके ऊपर दो शीशे लगे हुए हैं। पीछे की तरफ एक दरवाजा दिख रहा है।

की लाइन वाली खड़े हुए हैं सामने कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं और कुछ झालर दिखाई दे रही हैं।

सामने कुछ एल_सी_डी पर शो होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके पीछे कुछ बेल दिखाई दे रही हैं।

जिसके ऊपर कुछ दुकानें बनी हुई हैं जिनमें शटर लगा हुआ है।

नीचे एक जनरल स्टोर दिखाई दे रहा है उसके पास में तो आदमी बैठे हुए--

इसमें कुछ गोभी दिख रही है कुछ आलू दिख रहे हैं।

इस फोटो में सामने एक डिजिटल हाउस दिखाई दे रहा है।

इसमें कुछ अंदर की तरफ मेज दिखाई दे रही हैं जीस पर एक मॉनिटर रखा हुआ है।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा पेट्रोल पंप दिख रहा है।

एक बड़ी सी स्टेज बनी हुई है जीस पर एक कारपेट बिछी हुई है।

इस फोटो में सामने कुछ बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर की तरफ दीवार पर कुछ बड़ी बड़ी पेंटिंग टंगी हुई हैं और कुछ फूल टंगे हुए हैं।